एक औरत चेयर पर बैठी है और एक अ खड़ी है उसने भी मास्क लगा रखा है ।

और गेट के सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है जिसने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

यह एक जगह दिखाई दे रही है जिसकी --

फ़्लाईबल फ्लाईओवर के ऊपर रिलीज लगी हुई ।

वीके अंदर बहुत बड़ी सी स्क्रीन भी दिख रही है।

और उसके नीचे डॉक्टर दीपक रंजन--

पूरा शहर दिख रहा है घर --

यह कोई जगह दिखाई दे रही जहां का एक गेट दिख रहा है गेट ।

खड़ी दिख रही है उनके आगे।

वैट लिफ्टिंग वाली है और ऊपर की छत पे लाइट लगी दिख रही हैं।

उसके पीछे एक चेयर लगी दिख रही है चेयर पे एक व्यक्ति बैठ दिखाई दिख रहा है और --

व और एक कार है जिसके ऊपर कुछ पैंट लगाई जैसे लगाता दिख रहा है।